इस पर खड़ा ये भी लगी है और ये बजरी भी दिख रही है और यहाँ पर अच्छा बोहोत अच्छा सीन लग रहा है मुझे ना मिलेगा इसलिए मुझे ये अच्छा लग रहा --

ये कुछ मुझे रंगोलिया बनाती दिख रही हैं कुछ पैकेट खोलती दिख रही है कोई रंग डाल रहा है और मुझे ब्लू कलर कि शर्ट पहने भी लड़किया दिख रही है।